इस चित्र मे सुप्रजा पाव भाजी वाला का बोर्ड नजर आ रहा है पीछे की तरफ दुकानोंके अंदर टेबल कुर्सिया लगी है और वेटर दिखाई दे रहा है।

इस चित्र पर एक बहुत बड़ी बाल्टीया और कुछ समान रखा नजर आ रहा है काम का समान ऊपर बहुत सारी हरी बाल्टीया रखी है।

इस चित्र मे एक सुपर मार्केट दिखाई दे रहा है चित्र मे बहुत सारी साडिया दे रहा है। काउंटर कांच का है।

इस चित्र मे एक सफ़ेद रंग की कार दिखाई दे रही है एक व्यक्ति का घर दिख रहा जो इसका फोटो ले रहा है बहुत सुंदर --

बहुत सारी गड़िया खड़ी हुई है। ऊपर आसमान नीचे ए जमीन दिख रही है। सामने भी कुछ व्यक्ति खड़े नजर आ रहे है।

सामने नीला आसमान और बडे बडे पेड़ दिखाई दे रहे है।

अमर ज्योती के प्राली दुकान दिखाई दे रही है। पीछे नीला आसमान हरे भरे पेड़ और सामने की तरफ एक बस खड़ी दिखाई दे रही है नीली।

बहुत सुंदर दिखाई दे रहे है पीछे की तरफ़ नीला आसमान और एक चित्र एक छोटे-बोटे छोटे-मोठे पोधे भी बहुत सारे टंगे हुए पीछे एक झोपड़ी जैसी--

एक दिखाई दे रहा है टीचर्स बैनर लिए खड़े हुए है फ्री फ्री अह हैल्थ कॅम्प का बैनर लिए खड़े हुए है।